यह में ब्लैक कलर का।

घर है यहा में दरवाजा भी है ।

यहां मे एक स्टेज दिखाई दिखाई दे रहे हैं।

और पंखा लोग भी है।

ये फूल सब भी साइड साइड में पूरा लगा के है।

आसमान भी दिखाई दे रहा--

में लाइट भी जल रहे--

टेबल रखे हुए है उसको राउंड करके है उसको दोनों साइड में--

ऊपर में टिना से लगा है।

और उधर आगे में आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बॉडी बनाने वाले जिम का अंदर है।

ये एक क्लास रुम है शायद।

वॉल को भी पूरा व्हाईट से पेंट कर के उधर में पीछे में शीशा वाला है।

राइट साईड में भी आदमी लोग बैठा ।

खाली में भी ऐसे वाइट करके ऐसे उधर में भी पूरा कवर करके है कार्टून से--

यहां में दिखाई दे रहा एक घर है।

यहां में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।

ये नीचे में दिखाई दे रहा है बेग सब लाइन लाइन करके रख के है।

यहां भी दिखाई दे रहा है आदमी लोग भारती दिखाई दे रहा है।

और बिल्डिंग भी है।